देखिए यह एक अनाज गोदाम का फोटो है यहां पे बहोत सारी--

सारे के सारे बोरियों में चावल भरी हुई है।

और दवाई अभी यहां पे अच्छी अच्छी रखी है।

देखिए यहां पर एक बहोत सुंदर सा--

और बहोत सारे जो नमकीन वगैरह हैं उसके जो रैपर हैं।

पे कैफे है काफी सुंदर यहां पे खाना वगैरा मिलता--

एक बड़ा सा यहां पे गार्डन दिखाई दे रहा है हमें यहां पे काफी सुंदर से सोफा रखे हुए हैं।